यहाँ पे बोहोत सुंदर बना हुए हैं और यहाँ पे बोहोत सारे आदमी है।

और इसके किनारे बाइक है ।

सरस्वती मां है लक्ष्मी मां है गणेश भगवान है।

ये कंगारू है और ये जंगल में कंगारू है इसका बच्चा लगता है खो गया है इसलिए ये गुस्सा में है बहुत रफ्तार में है ये कंगारू अपना बच्चा को ढूंढने--